बीच में एक आदमी खड़ा दिख रहा है।

कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

उसके बाहर सीढ़ी बनाई हुई है।

ऊपर बैलून से सजावट की हुई है जो की अनेक रंग के हैं।

यहां पर कुछ व्यक्ति जाते हुए दिख रहे हैं।

इसके बाहर की कांच की डोर लगी हुई है और साइड में काउंटर दिख रहा है।